यंहा पर ये नमाज पढ़ने वाले नवाजी इधर बैठे है यंहा पीछे दीवार पर नाम लिखा है ला इलाहा ईल ईल इल्लाह मोहहमदूर रसुलूलाह।